जो वीवो कंपनी का है।

यहां मोबाइल बेची जा रही है।

एक बगल में उसके माता पिता हैं।

और यह वहां पे बहोत सी आर्टिफिशियल फूलें रखी हुई हैं।

यह कोई क्लीनिक का दृश्य है।

यहां पे दो चेयर ऐ एक टेबल है जिसके ऊपर दो बॉटल रखी हुई है।

बगल में कुछ किताबें खुली हुई हैं जो टेबल पर रखी हुई हैं।

यहां पे दो लाल पर्दे भी हैं।

यह एक शादी का या किसी भी मशहूर फंशन है।

जो बहुत ही मनमोहक दृश्य का वर्णन कर रहा है।

यहां पे जिम में बहुत सी इक्विपमेंट रखी है।

जिम करने के लिए बनी हुई हैं।

ऊपर एक पेड़ भी है जो हरा कलर का दिख रहा है।

इसमें लोग बैलून को सजाए हुए हैं।

यहां पे कुछ इमारतें रूपी नुमा दिख रहा है।

सोनपुर मेला दो हजार उन्नीस है।

यहां पे एक त्रिपाल है।

यहां पे टिकट काउंटर भी है।

उनका कलर सफेद और आसमानी कलर का है।

जहां पोड और पौधों को--

जो बहोत ही मनमोहक दिख रहा है।

जहाँ पे किस्म किस्म की वरमालाएँ बिक रही हैं।

और यहां पे तीन आदमी दिख रहे है जो शायद दुकानदार है।

हैं और यहां बना रहे हैं जय हिंद।

कलर और आसमानी कलर भी है।

और यहां पे एक मैन्यू कार्ड रखा गया है।

है और कुछ गिलासें उल्टी रखी गई--

जिसमें तीन तरह के खंभे नुमा आकार की डिजाइन बनाकर रखी गई हैं।

यह एक कैफिट एरिया है।

जिसपे खाने और कोई भी चीज के लिए रेट फिक्स करने का लि ये लिखा गया है।

ऐ यहां पे व्हाट आई कैन आई हेल्प यू लिखा है।

यहां पे बगल में एक जरनेटर भी रखा हुआ है।

शीशे की बाल्टी हैं और बहोत ही अच्छा दिख रहा है।

यहां पे मजदूर हाफ पेंट और लाल टी शर्ट में भी खड़े हैं।

यह एक दुकान सा लग रहा है जिसपे रॉयल बुक डिपोट लिखा हुआ है।

और यहां के रोड का दो भाग करने वाला अभी तक पेंट नहीं किया गया है।

और यहां ऊपर कुछ मूर्तियां बनी हुई है।